नमस्कार लिनक्स में सिस्टम एडमिनिसट्रेशन के बेसिक्स पर स्पोकन ट्युटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे
एड्यूजर सू यूजरमॉड यूजरडेल इद डू डीएफ मैं इस ट्यूटोरियल में लिनक्स का उपयोग कर रहा हूँ
आपको पहले से ही जनरल परपज यूटिलिटीज इन लिनक्स ट्यूटोरियल देखने की जरूरत है
जोकि इस वेबसाइट पर उपलब्ध है
दिखाए गये कमांड्स का निष्पादन करने के लिए एडमिन एक्सेस होना आवश्यक है
चलिए पहले सीखते हैं की कैसे एक नया यूज़र बनाएँ
एड्यूजर कमांड हमारे लिए एक नया प्रमाणित यूज़र लॉगिन बनाएगा
सुडो कमांड का इस्तेमाल करके हम जितने चाहे उतने यूज़र अकाउंट जोड़ सकते हैं
चलिए मैं आपको सुडो कमांड का एक संक्षिप्त वर्णन देता हूँ
सूडो कमांड एडमिनिसट्रेटिव यूज़र को एक कमांड को एक सुपर यूज़र की तरह निष्पादित करने की अनुमति देता है
सूडो कमांड के पास कई सारे विकल्प हैं
हम विकल्पों के बारे इस ट्यूटोरियल में आगे जानेंगे
चलिए अभी न्यू यूजर बनाना सीखते हैं
यहाँ मैंने पहले से ही टर्मिनल खोला है
यहाँ कमांड टाइप करिये सुडो स्पेस एड्यूजर और Enter दबाइए
आपको यहाँ एक पासवर्ड देना होगा
मैं यहाँ एडमिन पासवर्ड दूंगा और Enter दबाऊँगा
टर्मिनल पर टाइप किया हुआ पासवर्ड नहीं दिखता है
अतः पासवर्ड सावधानी से टाइप करना पड़ेगा
एक बार जब हो जाएगा एक सूचना दिखेगी adduser160 ओनली ओने ओर त्वो नेम्स एलोव्ड
चलिए डक नामक एक नया यूज़र अकाउंट बनाते हैं
कमांड टाइप करिये सुडो स्पेस एड्यूजर स्पेस डक और इंटर दबाइए
हमने डक नामक एक नया यूज़र बना लिया है
एक नये यूज़र को बनाने की प्रक्रिया में इस यूज़र के लिए एक अलग होम डाईरेक्ट्री भी बन गयी है
कृपया ध्यान दें कि यूज़र डक के लिए हमें एक नया पासवर्ड देना होगा
अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड टाइप करिये मेरे उदाहरण में मैं डक टाइप करने जा रहा हूँ और Enter दबाइए
कृपया नया पासवर्ड फिर से टाइप करिये
पासवर्ड दो बार सुरक्षा कारणों और पुष्टिकरण के लिए पूछता है
अब नये यूज़र के लिए हमारा पासवर्ड अद्यतन हो गया है
हमसे अन्य जानकारी भी पूछी जाएँगी
किन्तु अभी के लिए मैं केवल फुल नामे डक के रूप में enter करूँगा और enter बटन दबा कर अन्य जानकारी रिक्त छोड़ दूँगा
Enter मैं इसे य दबा कर निश्चित करूँगा
यह इस चीज़ की पुष्टिकरण के लिए था कि सारी सूचनाएँ सही है
चलिए अब जाँचते हैं कि यदि यूज़र अकाउंट बना है
यह करने के लिए कृपया कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करिये
एलएस स्पेस होम और enter दबाइए
होम फोल्डर में यूज़र्स की सूची दर्शाने के लिए एलएस कमांड का इस्तेमाल करते हैं
और यहाँ हमारा डक नामक एक नया यूज़र बन गया है
चलिए मैं स्लाइड्स पर वापस जाता हूँ
अब अगला कमांड सू है सू का मतलब स्विच यूजर है
यह कमांड वर्तमान यूज़र से दूसरे यूज़र में बदलने में मदद करता है
चलिए अब टर्मिनल में जाते हैं
कमांड एंटर करियेटर्मिनल पर सू स्पेस हाइफेन स्पेस डक और Enter दबाइए
आपसे एक पासवर्ड माँगा जाएगा
मैं यहाँ यूज़र डक का पासवर्ड टाइप करूँगा कृपया याद करिये वह खुद डक था
कृपया ध्यान दीजिये टर्मिनल पिछले यूज़र जोकि हमारे उदाहरण में डक है से नये यूज़र में बदल जाएगा
इस यूज़र से लॉग आउट होने के लिए टाइप करेंlogout और Enter दबाइए
अब टर्मिनल वर्तमान यूज़र डक से लॉग आउट हो जाएगा और पिछले यूज़र अकाउंट जो विन्हाई है पर वापस चला जाएगा
चलिए यूजरमॉड कमांड के बारे में सीखते हैं
यूजरमॉड कमांड सुपर यूज़र या रूट यूज़र को अन्य यूज़र अकाउंट्स की सेटिंग्स बदलने में सक्षम बनता है जैसे कि
पासवर्ड को बिना पासवर्ड या रिक्त पासवर्ड में बदलना
वह दिनांक दर्शायें जिस पर यूजर अकाउंट निष्क्रिय हो जायेगा
इस कमांड की कोशिश करते हैं और देखते हैं
मैं अभी टर्मिनल पर जाता हूँ
मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज़र अकाउंट डक के लिए समाप्ति तिथि निर्धारित करें
यहाँ कमांड प्रोम्प्ट पर टाइप करिये
सुडो स्पेस यूजरमॉड स्पेस e स्पेस 2012 12 27 स्पेस डक और एंटर दबाइए
यूज़र अकाउंट समाप्ति तिथि जैसा यहाँ कमांड में उल्लिखित है वैसा विकल्प e की मदद से निर्धारित हो जाएगी
अब आपने यूज़र अकाउंट डक के लिए एक समाप्ति तिथि निर्धारित कर ली है
चलिए अब उइद और गिड कमांड्स के बारे में जानते हैं
इद - कमांड सभी यूज़र्स और ग्रुप्स की पहचान को जाँचने के लिए इस्तेमाल होता है
यूज़र की पहचान के बारे में जानने के लिए हम इद स्पेस u का इस्तेमाल करेंगे
ग्रुप यूज़र्स की पहचान जानने के लिए यह है इद स्पेस g चलिए इस पर अब कार्य करते हैं
टर्मिनल पर टाइप करते हैंid और Enter दबाइए
अब हम सिस्टम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर यूजर आईडीएस और ग्रुप आईडीएस देख सकते हैं
केवल युसर इद जानने के लिए u विकल्प इस्तेमाल करेंगे
कमांड टाइप करते हैं इद स्पेस u और enter दबाइए
अब हम केवल युसर्स की आईडीएस देख सकते हैं
यदि हमें युसर्स का नाम जानना है तो160
पता करने के लिए हम टाइप करेंगे
यहाँ टर्मिनल पर इद स्पेस n स्पेस u और Enter दबायेंगे
अब हम यूज़र्स के आईडीएस के बजाय उनके नाम देख सकते हैं
चलिए अब ग्रुप आईडीएस के लिए कमांड्स सीखते हैं
टाइप करते हैं इद स्पेस g यहाँ हम ग्रुप आईडीएस देख सकते हैं
यदि हम सभी वर्तमान यूज़र के ग्रुप आईडीएस देखना चाहते हैं तो टाइप करें
इद स्पेस जी और Enter दबाइए
कृपया ध्यान दें कि मैंने जी को बड़े अक्षरों में टाइप किया है
अपने लिए उत्तर देखें
अब सीखते हैं कि कैसे एक यूज़र अकाउंट डिलीट करें
इसके लिए हम यूजरडेल कमांड इस्तेमाल करेंगे
हम यूजरडेल कमांड का इस्तेमाल करके एक यूज़र अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं
टर्मिनल पर इसकी कोशिश करते हैं
यहाँ टाइप करिये सुडो स्पेस यूजरडेल स्पेस r स्पेस डक
मैंने r विकल्प इस्तेमाल किया है
यह यूज़र को उसकी होम डायरेक्ट्री के साथ हटाने के लिए है
चलिए Enter दबाते हैं और देखते हैं क्या होता है
अब यूज़र डक डिलीट हो चुका है
इसको टाइप करके जाँचिये
एलएस स्पेस home और Enter दबाइए
हम पायेंगे कि यूज़र अकाउंट डक डिलीट हो चुका है
मैं अब स्लाइड्स पर वापस जाता हूँ
लिनक्स सिस्टम एडमिनिसट्रेशन में कुछ उपयोगी कमांड्स हैं डीएफ और डू डीएफ कमांड डिस्क पर खाली मौजूद जगह की जानकारी देता है
और डू कमांड एक फाइल ने कितनी जगह अधिकृत की है उसकी जानकारी देता है
कृपया नियत कार्य के लिए इन दो कमांड्स का इस्तेमाल करिये और आउटपुट जानिए
चलिए टर्मिनल में जाते हैं मैं आपको डीएफ कमांड का इस्तेमाल करके कुछ उपयोगी विकल्प दिखाऊँगा
कृपया टाइप करिये डीएफ स्पेस h और Enter दबाइए
यहाँ यह फाइलसिस्टम का साइज़ और प्रयुक्त की हुई जगह दर्शाएगा
यह मनुष्य के पढने योग्य संरूप में लगी हुई जगह भी दर्शाएगा
अब डू कमांड्स के साथ कुछ विकल्पों की कोशिश करते हैं
इस समय मैं यह मान रहा हूँ कि आपने अपने होम फोल्डर पर कुछ टेक्स्ट फाइल्स बनायीं हैं
यदि नहीं तो कृपया जनरल परपज यूटिलिटीज इन लिनक्स पर ट्यूटोरियल को देखें
मैंने पहले से ही कमांड्स के निष्पादन के लिए अपनी होम डायरेक्ट्री में कुछ टेक्स्ट फाइल्स बना ली हैं
होम फोल्डर पर जाइये टर्मिनल पर टाइप करिये
सीडी स्पेस होम और Enter दबाइए
फिर टाइप करिये डू स्पेस s स्पेस टीएक्सटी और enter दबाइए
यह कमांड आपको डायरेक्ट्री में मौजूद टीएक्सटी फाइल्स उनके फाइल साइज़ेस के साथ एक विवरण देगा
नियत कार्य के लिए कमांड प्रोम्प्ट पर टाइप करिये
डू स्पेस ch स्पेस txt और देखिये क्या होता है
मैं स्लाइड्स में वापस जाता हूँ
संक्षेप में हमने यह सीखा160 नया यूज़र बनाने के लिए एड्यूजर कमांड
एक यूज़र से दूसरे यूज़र में बदलने के लिए सू कमांड
यूज़र अकाउंट सेटिंग्स को बदलने के लिए यूजरमॉड कमांड
यूज़र अकाउंट डिलीट करने के लिए यूजरडेल कमांड
यूज़र आईडीएस और ग्रुप आईडीएस की जानकारी जानने के लिए इद कमांड
फाइल सिस्टम साइज़ और उपलब्धता जाँचने के लिए डीएफ कमांड
एक फाइल द्वारा अधिकृत स्थान जाँचने के लिए डू कमांड
इसी के साथ हम सिस्टम एडमिनिसट्रेशन के बेसिक्स पर इस ट्यूटोरियल में समाप्ति की ओर हैं
विडियो इस उर्ल पर उपलब्ध है यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का सार देता है
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड़ करके भी देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकेन ट्युटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाते हैं
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे सम्पर्क करें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
भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
अधिक जानकारी इस उर्ल पर उबलब्ध है
मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद